सड़क के किनारे कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं। आर् --

जहाँ व्यायाम करने की मशीनें रखी दिख रही हैं।

इसमें एक मेज रखी है लकड़ी की।

एक मेज़ के पास एक व्यक्ति खड़ा दिख रहा है।

चित्र में सड़क पर खड़ी हुई एक सफ़ेद चार पहिया वाहन दिख रही है।

सीढियाँ दिख रही हैं दो पहिया वाहन खड़ा दिख रहा है।

उँचे काले पहाड़ दिख रहे हैं।

इसी जगह का रास्ता दिख रहा है।